लाइट भी जल रही है एक लड़की का बैठने के लिए भी रखा हुआ है।

और पीछे लाल रंग के घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां स्कूटी बाइक साइकल भी खड़ी है।

कुछ पहाड़ी दिखाई दे रही है आसमान में बादल छाया हुआ है।

क्रिकेट खेल रहे हैं घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक वाटर पार्क का फोटो है इसमें बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ दो चार आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक सड़क दिखाई दे रहा है बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और कि आदमी अपने जींस में हाथ डाल रखा है।

बहोत सारे नीचे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं झूले भी लगे हुए हैं गाड़ियां भी बहोत सारी खड़ी है।

इसमें बोहोत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं टेबल भी रखे हुए हैं। पंखा भी लगा हुआ है।

इस फोटो में बहोत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं।

वहां श्री मय हरिहर दास उच्च विद्यालय लिखा हुआ है।

पोस्टर लेकर के सब का मुंह ढका हुआ है।

बच्चे भी खेल रहे हैं एक साइकिल पे दो बच्चे हैं।

जो की लिखा हुआ है होटल राधिका गुरु कृपा रेस्टोरेंट ।

पंखा भी लगा हुआ है खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

ये लोग खेल रहे हैं सब बच्चों ने शूज़ पहन रखा है।

नीले रंग का दो गेट दिखाई दे रहा है।